ढेर सारी बाईक है इस्कूटी है ढेर सारी गाडियाँ लगे हुए है।

उपर में ढेर सारे बल्ब है ढेर सारे आदमी लोग खड़े हैं।

बगल में एक छोटा सा झोपड़ी है जिसमें ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

इसमें एक टेबुल है चार कुर्सियां है नारंगी कलर के।

उसके साथ में बच्ची है बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है बगल में एक खजूर का पेड़ है।

जिसमें कोचिंग पढ़ाया जाता है।

ढेर सारे जिम करने वाली मशीन रखे गए हैं।

बा अब दीवाल में वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

ढेर सारे बल्ब हैं तीन चार कर लगे हुए हैं।

यह एक मस्जिद का दृश्य है।

नीचे मार्बल पत्थर लगाए गए हैं।

ब्राउन कलर का खिड़कियां है जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

ढेर सारे वृक्ष लगे हुए है।

एक टेबुल है एक बोतल रखा गया है।

बगल में ढेर सारी खिड़कियां हैं।

अंदर बहुत सारी खिड़कियां है सीढ़ियां है।

बाहर में बाहर में बहुत सारे पत्थर है।

दो गाड़ियां हैं ढेर सारी कुर्सियां हैं लाल कलर का मैट बिछाया हुआ है।

रूम में बल्ब लगे हुए।

यह एक कमरे का चित्र है।

जिसमें जिसके बाहर बहुत बड़ा गेड गेट है।

व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है ढेर सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

इसमें ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं।

हर कलर का बैलून लगा हुआ है लाल पीला काला--

पीछे बहुत पहाड़ दिखाई दे रहा है जो बहुत ऊंचा है।

यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है जो बहुत बड़ा है।